देख कर के लग रहा है काफी बड़ा बंगला है उसमें दो लोग वाइट वाश का काम कर रहे हैं।

ये जहांपना सिटी फॉरेस्ट लग रहा है।

होता है उसके बाहर जो बोर्ड लगे होते हैं वो भी दिख रहा है।

कन्नाट प्लेस है वहां का रात का सीन लग रहा है।

करनाट प्लेस के अंदर काफी सारे दुकानें वगैरह सब कुछ बंद है अभी लाइटें जल रही है पब्लिक बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रही है।

उस पर कोई बेड लगे हुए हैं और कोई बैठा हुआ भी है।

बेड के ऊपर एक काफी अच्छा ब्लैक कलर का ब्लैंकेट --

देखकर ऐसा लगता है दिल्ली के कोई बहुत अच्छा सा पार्क है।

साफ सुथरी जगह है समझ नहीं आ रहा है ये कि कलर इसका ऐसा माले का कलर सफेद है।

पीछे फूलों से काफी अच्छा सजाया गया है।

काफी अच्छा मौसम भी है सड़क साफ है हल्की-हल्की बारिश जैसा लग रहा है।

बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आसमान--

सफेद रंग का है सामने पौधे लगे हुए हैं सामने सड़क सामने पौधे हैं सामने सड़क भी जा रही है।

बड़ा सा गोदाम होता है ना जैसे सामानों का होलसेलर का दुकान होता है या किसी--

दुकान के अंदर कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग बाहर खड़े हैं।

ये कैफे है चालीस के नाम से है।

सुबह का समय है धूप काफी अच्छी खिली हुई है चारों तरफ हरियाली है।

साड़ियां बच्चों के कपड़े सब कुछ मिलता है।

लाल कलर के बोर्ड लगे हुए हैं मुझे लगता है ये काफी पुरानी दुकान है ये।

अच्छा लग रहा है देखने में किसी मार्केट के अंदर का ये फल की दुकान है।

सामने खिड़की पे पर्दा लगा हुआ है कमरे के अंदर लाइट जल रही है।